एक बड़ा सा हॉल स्कूल बना हुआ है स्कूल है।

जिसमे सब लड़के और लडकिया बैठ के चेयर में अपना प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कर रही है और कूछ मैडम और सर है जो देख--

एक क्लासरूम है जिस क्लासरूम में एक चेयर बिछी हुई है।

मंदिर है जिसमे साई बाबा बैठे है और फूल चढ़े हुए है।

और सब लडके और स्टूडेंट चेयर पे बैठे हुए है पेपर दे रहे है और मैडम खड़ी है।

बड़ासा हॉल है एक क्लास रूम जिसमे सभी बच्चे लोग बैठे हुए है।